यहाँ पे एक बड़ा सा गार्डन जैसा दिखाई दे रहा है जहाँ पे लोहे के कुछ दो तीन बने हुए दिखाई रहे है सामने मे अअअ एक बैठने का कुछ बना हुआ है।